सामने एक औरत नृत्य करते हुए नज़र आ रही है पीछे पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है जो कि नीले कलर का है।

सामने एक देवता की फोटू दिखाई दे रही है भगवानजी की जिसमे बहुत सारे लोग भगवान की पूजा करते हुए नजर आ रहे है।